इसमें लिखा है जीना सीखो और इंग्लिश मैं लिखा हुआ है --

ढके हुए हैं टैप रखे हुए हैं ।

मछलियाँ रखी हुई है बहुत सारी | मछलियों को उस बॉक्स में डालते जा रहे हैं तोल तोल --

बिल्डिंग के बाहर एक अअ बाइक खड़ी हुई है ।

और यहाँ पे बहुत सारी छड़ लगी हुई हैं ।

कुछ छोटे पेड़ हैं कुछ बड़े पेड़ हैं |